और रूम में और भी कर्टनस है जोकि खिड़की के पास हैं और रूम में कुर्सियाँ हैं टेबल हैं।

दूर यहां पे बहोत सारी ट्रेस दिख रही है और यहां पे कुछ--

ऑफिस है और यहाँ पे दो चेयर्स नजर आ रही है।

ये एक साइकिल शॉप है और यहाँ पे एक लड़का --

अ ब्लैक अ पेंट और वा रेड कलर की --

और एक वाइट और एक कार आ रही है और यहाँ पे बहुत घने पेड़ है।

ये यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं।

और यहाँ पे एक अअ रेडियो वाला है।

एक जाली दी हुई है जो कि ग्रे कलर की है।

ये फूलों की दुकान है और यहाँ पर बहुत सारे किस्मों के फूल लगाए गए हैं।

गांव है और यहां पे एक हार्ट टाइप का कुछ बना है।

और इसकी खिड़कियां वाइट कलर की है हट का रंग पिंक कलर का किया हुआ है।

ये किसी कमरे में ये लोग खड़े हैं।

और और ये मरून कलर है।

और साइड्स में पौधे है और दीवार पे एक स्विच लगा हुआ है।

ये एक सड़क है और यहां से दो आदमी--

ये गमले हैं और इनमें पौधे भरे हुए हैं।